साइड में और एक बाइक है और नीचे में बहोत बड़ा सीमेंट का ढलाई किया हुआ जगह है। जो पुराना-पुराना घर है।

और पीछे के तरफ सुंदर सुन्दर पेड़ है जो फूल फरे हुए हैं और एक ऑटो वाला जा रहा है जो बहुत सुंदर है।

जहाँ पे बहुत सारी टीन रखी हुई है जो तेलों से लेस है।